और बहोत सारी चीजें दिख रही है और बलफ बल्ब ट्यूब्स भी दिख रहे हैं।

यहां पे मुझे एक माता का मंदिर दिख रहा है बहुत खूबसूरत और इसमें वूडन लगी हुई है।

यहां पे एक आदमी खड़ा है और यहां पर बहुत सारा सामान है।

रेड व्हाइट कलर के फुल दिख रहे--

फ्लाई ओवर फ्लाई ओवर भी दिख रहा है और यहां पे बहुत सारी गाड़ियां दिख --

ये एक शॉप है जहां पे बहुत सारा समान रखा हुआ है।

अह आदमी भी दिख रहे हैं और यहां पे एक बिल्डिंग बन रही है।

और यहां पे गाड़ियां भी लगी हुई है।